कितनी अच्छी कॉलेज लग रही है | पीले कलर से पुत्ती है | खिड़की वगेरा भी दिख रही है ।

कार रखी है | निचे पे तो बिच गा में रखी है | खेत दिख रहो हैं | पीछे से सब सामान दिख रहो है | सब लोग खड़े हैं | बहुत ही अच्छे --

देखो तो माता जी की झांकी आ रही है | देखो तो सब जन ट्रैक्टर से लेके आ रहे हैं | सब जने कैसे चल चल के आ रहे हैं ।

देखो तो कितनी धूम-धाम मची है | कीतो अच्छो लग रहे हो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहो है देखने में तो ।

आंटी खड़ी है और एक भाईयों खड़ो भाईयों आंटी देख रहा है देखो तो।

देखने में भगवान जी देखो अलग-अलग दूध फूलों की माला चढ़ी भगवान जी यो ने --

यहाँ पर कछु